ये वैसे कुछ लोग सीलिंग बना रहे हैं लकड़ी की। तीन मिस्त्री लगे हैं। एक मिस्त्री चश्मा ऊपर तहल बनाओ कुछ मशीनें लगाए हुए हैं। नी --

गाड़ियाँ धुलता है और यहीं पास में बिल्डिंग है। एक अल्टो जा रही है स्लेटी रंग की यहाँ आस-पास स्कूटी खड़ी है।

और सामने दुकान है और उसमें चिप्स विप्स कुछ टंगा हुआ है खाने वाली दुकान है ऊपर पुल है।

तीन लोग योग आसन कर रहे हैं। बोहोत और एक बोर्ड लगा है। बोर्ड में फिटिंग हुई। पीला रंग का रूम का दीवालें हैं।

ये एक खेत है। किसी चीज की वो खेती कर रहा है। ग्रीन पत्तियां है और हरा रंग का कटोरा लिया हुआ है। नीली शर्ट पहना है। धारिया व्हाइट रंग की है और ये खेती किसान खेती कर रहा है।

ये कोई शहर या जिला या महामंडल है और इसमें गाड़ियां चल लाइ हैं बस --